लोग खड़े हैं और छठ पूजा कर रहे हैं ये लोग अपनी मांग में भर कर सिंदूर लगाए हुए हैं।

जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

यहां गर्म कपड़ों से लेकर सूती कपड़े भी मिलते हैं।

सामने में एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रही है।

सामने में दो जन बैठे हुए हैं।

ये मंदिर शिव जी का बोहोत ही भव्य मंदिर है।

यहां बोहोत सारे लीचियाँ प्लेट पर रखी हुई हैं।

यह एक एटीएम है जिसका नाम इंडियन ओवरसीज बैंक एटीएम है।

यह हमारे मोबाइल तक नेटवर्क पहुंचाने का काम करती है।